पांच गाड़ियाँ दिख रही हैं। एक वाइट रेड रेड ब्लैक और लम्बी लम्बी टहनी वाले --

जैसा घर दिख रहा है व से छोटे-छोटे घर दिख रे। एक रोड दिख रा। एक बड़ा सा --

और जो छ-छ छोटी छोटी गाड़ियाँ भी दिख रही हैं। एक वाइट कलर का कार दिख रहा है और प्लेटफार्म का ग्राउंड दिख रहा है।

फिर नारंगी दिख रहा है। सेब दिख रहे हैं। और बोहोत सारी झूरिया दिख रही है।

नहीं है। तीन बाइक दिख रही हैं फिर दो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं। खिड़की में वाइट कलर का पेंट दिख रहा है।

जिसम जिसमे नारियल है और कुछ औरते मांग में सिंदूर भरी है वो भी ऑरेंज कलर का।

इमेज में दो घर दिखाया गया है । और पहारे हैं। घर के पीछे छोटे-छोटे पेड़ हैं। एक बर्गर का --